जिसमें इस के बोर्ड भी लगे हुए हैं बाहर की तरफ और इसमें बहोत सारे लोग अन्दर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और इसके बाहर एक ग्रीन कलर की जाली भी लगी हुई है।

चादर लेके जा रहे हैं। यहाँ पर लाइटिंग की ज्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है और दो बच्चे कैन्डल लेके जा रहे हैं।

आरके कॉफी स्टॉल और यहाँ पर एक आदमी चाय पीता हुआ भी दिखाई दे रहा है और काफी सारे आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं।

और यहाँ पर नीचे की तरफ हरे कलर की घाँस लगी हुई है और डैम का कलर हल्का ग्रीन कलर है और इसकी रेलिंग भी बहुत सुंदर कलरफुल बनी हुई है ।

आप लोग देख सकते है ये एक फंक्शन की फोटो है जहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है जहाँ पर लाइन से बहुत सारे लोग आए हुए है।

और कुछ लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर इस मंदिर के उपर चारो तरफ गन्ने लगाए हुए हैं और यहाँ पर पूजन हो रही है।

इस यहां पर सामने की तरफ पूरे में हरे कलर की घास लगी हुईं है और उसके चारो तरफ बोहत सारे अलग-अलग फूल के पेड़ भी लगे हुए हैं।

यहाँ पर काउंटर्स पर बहुत सारे लोगो की भीड़ लगी हुई है। और यहाँ पर काफी सारे लोग काम करवाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।